लैपटॉप बा टेबल --

कपड़ा के एगो दुकान ह। खूबे अच्छा लागता। एगो आदमी पोस्टर पर टांगल खूब निक लागता। हरिहर में बा पीला में बा खूब अच्छा लागता। खूब निक बा।